यह एक नदी है जो जंगल के बीच में घाटी के बीच में नदी बही है।

और बहुत हरे-हरे पत्तियां पौधे हैं और पानी बह रही है।

लाइट लगाया गया और उसके ऊपर भी लाइट है उसके ऊपर भी लाइट --

यहां एक पूजा स्थान बनाया गया है और ऊपर में एक पंखा लगाया गया है चार पंखा है पूरा।

यह एक धान का खेत है और धान के खेत के बीच में एक झंडी सा लगाया गया है और बगल से रोड गया है।

और बगल में एक व्यक्ति कहीं फोन पर बात कर रहे हैं जो वाइट कलर का एक कार है।

यह रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट का नाम मंगोलिया है।

गेट के पास कोई बैठा हुआ है।

एक आदमी बैठे हुए हैं जो दूसरे आदमी भी काम कर रहे हैं और पिलर है रॉड दिख रहा है।

एक ब्राउन कलर का जैकेट है। एक गुलाबी कलर का जैकेट है। एक ब्लू कलर का जैकेट है।

जनधन बैंक दिख रहे हैं कंप्यूटर का भी दिख रहे हैं।

और एक येलो कलर का झंडी लगा हुआ है।

इसमें एक लड़की हैसबके मुंह पर ब्लर किया गया है और कुछ ऐसे बैठे है।

और उसके बगल में छपड़ी बना हुआ है।

और तरह तरह का पेड़ लगे हैं और ग्रीन कलर का ग्राउंड है और इसके बीच मे घास छिला गया है।